इस तस्वीर में सामने एक समुंदर है जो बहुत बड़ी है सामने कुछ बड़े - बड़े पत्थर गिरे हुए है साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

जो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है।

तस्वीर मे सामने एक सोफा रखा है। जो काफी बड़ा है।

इस तस्वीर मे सामने दीवार पर बहुत सारी फ्रेम्स और पोस्टर्स लगी है।

ये कुछ खेत भी है जो हरी भरी है पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे है।

तैर जिसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा सजा है आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

और बहुत सारे पौधे भी है यह तस्वीर एक इमारत के ऊपर से ली गई है।